और कुर्सी रखा हुआ है घर का कलर वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

यह एक घर है घर का रंग पीला रंग से पेंट किया हुआ है और लाल रंग से पेंट किया हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है स्कूल का कलर सफेद कलर का है स्कूल में बहुत सारा खिड़की लगा हुआ है और बहुत सारा गेट भी लगा हुआ है।

दुकान के बाहर आदमी भी है दुकान के बाहर एक बाइक लगा हुआ है बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक घर है घर के ऊपर एक बोड लगा हुआ है बोड पर हीरो लिखा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा घर है घर में बहुत सारा डिजाइन किया हुआ है घर के बाहर एक गेट भी है।

और बहुत सारा काउंटर में डिब्बा रखा हुआ है और बहुत सारा साड़ी का डिब्बा रखा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा दुकान है दुकान में बहुत सारा बोतल का डिब्बा रखा हुआ है।

घर का कलर वाइट रंग से पेंट किया हुआ है और लाल रंग से पेंट किया हुआ है।